जिसमे कुछ बिल्डिंगे दिख रही है बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए सीढिय़ा बनी हुई हैं यहाँ पर कुछ बाइक और स्कूटी पार्क हुई है।

जो एक छोटी सी दुकान की है इस दुकान के अंदर काफ सामान रखा हुआ दिख रहा है दुकान के अंदर और बाहर लाइट है ।

यहां हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक बिल्डिंग की है।